यहां पर एक बहोत बड़ा गड्ढा खुदा जा रहा है चार पांच जगह--

यहां पे कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं जैसे कि हाथ जोड़ के--

पलटे हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग आते तो कुछ लोग--

यह एक चूड़ी की दुकान नजर आ रही है यहां पर अलग अलग प्रकार की चूड़िया भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ काम चालू दिखाई दे रहा है लोहे बांध रहे हैं।

हाल के बाहर एक गाड़ी खदी खड़ी नजर आ रही है।

यहां पर एक किताब की दुकान दिखाई दे रही है और--